और ढेर सारी दुकाने है।

जिसके दोनों साइड दो पेड़ अ बड़े-बड़े लम्बे पेड़ दिख रहे है।

जो की वाइट कलर से रंगी हुई है उसके बाहर अ एक बाउंड्री है जो हरा कलर से रंगा हुआ है उसके अगल-बगल ढेर सारे पेड़-पौधे है जो की अच्छे --

मूर्ति विराजमान की गई है यह अ फूल से काफी अच्छी सजावट की गई है जो की काफी अच्छी दिख रही है।

मैदान में कुछ हमें भी दिख रहे हैं ।

इसके ऊपर की दृश्य बादल की है जो की काफी आ-आकर्षक लग रही है।